सोल हैंगर पर टंगे हुए हैं।

गाय और कचड़ी दोनों अच्छी क्वालिटी की हैं।

ये सामने हमें डी_पि_जे दिखाई दे रहा है।

और कोई भी इनसे कार सीख सकता है।

ज्यादा सरिये का उपयोग किया जा रहा है।

जिसके गेट लक्कड़ के बने हुए हैं।

एक आदमी ने अपना हाथ अपने कमर पर रखा हुआ हैं।

छक्स दिखाई दे रही है तस्वीर के रूप में--

कीकर के पेड़ के नीचे खड़ा हुआ है।

यहां हमे चार बसे खड़ी हुई दिखाई दे रही है।

यहां हमें बहुत सारे ब्लैक कलर के टायर दिखाई दे रहे हैं।